हो रहा है | ब्लू कलर सब पहना हुवा है दो दो नाव है दो नाव में दो में दो ओरेंगी है वो सामने देख रहे हैं ।

ये फ्लवार बेगूसराय में है | है। ए.आइ.एस.एफ़ --

यह पूल बन रहा है पुल के निचे है नदी है पेड़ पोधे हैं एक मछली है मछली का लग रहा है।

लोग दिस हे बगल में बहुत सारे घास हे कोलेज में उसे दो तिन हे तीनो के तीनो लोग बहुत सारे दर्शन दिख रहे हे ओर बेग लगा रखे हे ओर ऊपर डोर से दिख रहे हे ।

ये एक पुल है पुल के निचे तीन चार नाव भी है और कुछ पर्यटक घूम रहे हैं ।

यह फ्लावर नया बना हुवा फ्लावर हे अ ओर बनेगा अभी फिलाल इतना ही बन रहा हे ठीक हे ना अक्तिवा नही होना चयिहे |

ये दिख रहा है बुक एंड कॉपी दिख रहा है।